गाड़ी के बोनेट को डंडे के सहारे खड़ा करा गया है।

यहां पर एक टेबल है टेबल के ऊपर एक गुलदस्ता भी पड़ा हुआ है।

इन्हीं स्टेयर्स के पास एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसने पैंट शर्ट पहनी हुई है।

यहां एक ढाबा है ढाबे को बड़ा ही सुंदर से सजाया गया है।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं ये एक दिन का समय है यहां पर हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं यहां पर एक पेड़ है पेड़ के पास एक डंडा है डंडे की --

शॉप के पास कुछ लोग खड़े भी हुए हैं यहां पर एक गमला है गमले के ऊपर कुछ पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

और उसके ऊपर छोटे-मोटे पेड़-पौधे भी लगे हुए हैं बिल्डिंग को बड़ा ही डिजाइनदार बनाया गया है इसमें कुछ दरवाजे भी लगे--

यहां पे दीवारों को भी बड़े अच्छे से डिजाइन बनाया गया है यहां पर कुछ रोशनी भी आ --

घास के पास कुछ छोटे-मोटे हरे भरे पेड़ भी लगे--